मंदिर के तीन गुम्बज नजर आ रहे है।

निचे जो कार्य किया गया है वो लाल पत्थर का है।

झूले और फिसल पट्टी भी दिख रही है।

यह तस्वीर किसी हॉल की है।

जो की एक कत्थक की मुद्रा में दिख रहा है।

मूर्ति किसी बहुत बड़े स्टैंड के ऊपर रखी हुई है।

मंदिर में जो रंग कप इस्तमाल किया है वो नीला और सफेद है।

कुछ वाहन और एक कार दिख रही है।

इस तस्वीर मे कोई शिक्षण संस्थान या फिर कोई सरकारी ईमारत दिख रही है ।

जोकि किसी आई.आई.टी. या कॉम्पटेटिव एग्जाम की तैयारी रहे है।

किनारे की तरफ बहुत बड़े-बड़े कुछ प्ले प्लांट और झाड़ियाँ लगी हुई हैं ।

साथ ही बहच सारे झंडे लगे हुए है।

जिस समय पे काफी सारे चीजों में रोक लगायी गइ थी ।

इसका मतलब किसी क्लोथ स्टोर की तस्वीर है।

नदी के मोहाने पर बोहोत सारे कपास के पेड़ दिख रहे है।

शायद यह दुकान किसी कपड़े की थोक विक्रेता की है।

यह खिलाडी क्रिकेट खेल रहें हैं।

यह चबूतरा किसी गार्डन में बना हुआ है।

पब्लिक स्कूल पीछे की तरफ बोर्ड लगा हुआ है।

लगता है जिसमे ऊपर की तरफ एक घडी लगायी गयी है।